इस रूम में दो व्हाइट बैलून और एक रेड बैलून भी लगा हुआ है एक लैपटॉप है।

चारों ओर किसी चीज से घेरा हुआ है जो पिक का है जो बहुत अच्छा लग रहा है और सामने बहुत सारे व्यक्ति हैं।

एक दुकान में व्यक्ति भी है जो बैठके फोन चला रहे हैं।

एक व्यक्ति बैग ले के खड़ा है और बहुत सारी साइकिल है बहुत गाड़ियां हैं।

पोस्टर लगा हुआ है जिस में फाउंडेशन चाइल्ड एजुकेशन लिखा हुआ है।

पीछे एक गाड़ी हैं बोलेरो और बहोत ही अच्छा शोरूम दिख रहा हैं।

तीन बल्ब है जो बहोत ही अच्छा दिख रहा है और एक चित्र है जिसमें एक लेडीज हंस को पकड़े हुए है।

एड्रेस दिया है पता कॉलेज रोड बिजली ऑफिस में नजदीक देवघर।

अम्बर रेस्टोरेंट फोटो है ये।

एक बल्ब है जो बहुत साइन लाइट कर रही है वो ।

स्त्री है जो बैठे हुए हैं। एक लड़का जो कहीं जा रहा है।

बहोत ही अच्छा दिख रहा है बहोत ही अच्छा अच्छा जब फूल सजाया गया है आगे पर।

टैंक भी है जो ब्लू कलर का है और व्हाइट कलर है वह कुर्सी पर रखा हुआ है।

बहुत सारे गाड़ियां रखे हुए है बहुत तरह तरह के गाड़ियां हैं।

दो गाड़ी में झंडे लगे हुए है और एक घर भी हैजो की बहुत बड़ा है।

ये कहीं घूमने का जगह है जो बहुत ही अच्छा है।

एक पुल है जिसमें एक व्यक्ति खड़ा है एक बच्चा भी दिख रहा है दो लेडीज जाते हुए दिख रहा है।

तीन कार है बहुत सारे मोटरसाइकिल है एक सामने में सर्विस दुकान भी है जो मोटो जॉन का लिखा हुआ है।